दुकान में आदमी एक आदमी खड़ा हुआ हैं।

और उसके आस- पास बड़े बड़ा गार्डन है गार्डन में बहोत पेड़ लगे हुए है हरे कलर के--

इस तस्वीर में एक लम्बी सी लम्बा सा घंटा घर बना हुआ है घंटा --

और वहाँ पे नीचे हरियाली है घास लगे हुए है और बस वाइट कलर की है।

इस तस्वीर मे दो आदमी खड़े हुए है वो हतोड़ी से सीलिंग पे मार रहै है।

दो कारें रखी हुई है डिश टी_वी लगा हुआ है और अ और दुकान--

लोग हैं और आसमान दिख रहा है वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं झूले लगे हुए हैं पानी --